तथा एक व्यक्ति खड़ा हुआ है दुकान के ऊपर- एकबोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक झील दिखाई दे रही है।

जहां सामने एक छोटा सा भवन निर्मित है।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसके आसपास कुछ--